यह एक ऑफिस है यह ऑफिस में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं यह ऑफिस में सभी के अलग-अलग केबिन दिए गए हैं।

बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे आदमी सुबह-शाम घुमने के लिए यहाँ पे आते हैं यह जगह बहुत ही हरा-भरा दिख --

अभी यह खंडर हो चुकी है । अभी यहाँ कोई नहीं रहता है । यही यहाँ अभी घास-फूस उग गए हैं । यहाँ पे स आदमी आते तक नहीं हैं ।

बहुत सारे लड़के यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं एन्जॉय कर रहे हैं यह जगह बहुत ही सुंदर दिख --

यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है । यहाँ पे बोहोत सारे लड़के लड़कियों की सेलिब्रेशन बोहोत सारे गिफ्ट यहाँ पे ट्रोफी रखे गए हैं ।